ये बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़कियां भी बनाया हुआ है।

सामने में दो बच्चे के पास एक प्लास्टिक पकड़ कर देख रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक बहोत बड़ा जिम दिख रहा है।

और ये बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़कियां भी है।

और ऊपर में लाइट सफेद जला के है।

तीन इंसान खड़े हुए हैं।

जो कि व्हाइट और ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है।

और सामने में लाइट भी जल के है।

जो की वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक बहोत बड़ा कपड़ा का दुकान दिख रहा है।

ये फोटो में मुझे एक बहुत बड़ा नाव दिख रहे है।

ये फोटो में मुझे एक बहोत बड़ा रूम दिख रहा है।

जो कि व्हाईट और पर्पल कलर से पैंट किए हुए है।